रेड कलर की बोतल रखी हुई हैं।

यहां पर एक छोटा सा टेबल फैन भी रखा हुआ है।

और बैठने की एक छोटी सी--

और एक स्कूल का बैग भी रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

और एक आदमी कट्टे पर बैठा हुआ है।

और एक हरा कलर का बोर्ड भी दिख रहा है।

फूल के मौसम में गुलाब के पत्ते भी दिख रहे हैं।

यह एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

हां कुछ करंट के खंबे भी लगाए हुए हैं।

खुला आसमान भी दिख रहा है।